काफी गाडी निकल रही हैं रिक्शा भी ऑटो भी स्कूटी भी गाड़ी चार पहिये लोग भी निकल रहे हैं मार्केट में का --

ही बहोत अच लगा रहा हे | बहोत रोशनी है बहोत लाली जल रई काफी मोमबत्ती लगी बहोत अच्छा लग रहा है | वाशरूम |

कुर्सी डले हुई टेबल डले हैं रखे हैं लाइटे लगी पंखे लगे हैं।

पेड़ लगे हैं। मकान बने हुए है हरे हरे पेड़ है मकानों भी लगे हुए है चिर तारा पेड़ लगे हुए है मकान बने हुए है ऐसे सड़क में लाइट --

घणी साइकिल भी खड़ी हुई है। लोग घूम भी रहे है। दो दो बाइक खड़ी है दो दो गाड़ी भी खड़ी है। इंजन भी रखा है।